ये चित्र मा हमथे बड़ी जगह दिखेण लगी जखम हमते एक दिखेण लग्यूं जैका ओर पोर हमथे कुछ बाट्टा अर रेलिंग हु दिखेण लगीं।

नीसाण हम तें हवा कर दिखेण लग्युं जगदी कुछ सीढ़ी अर बट्टान नीसाण हम तें एक गाड करा दिखेण लगीं जै का उंडे कुछ ढुंगा भी एन।

ये चित्र मा हम तें एक बड़ु डैम दिखेण लग्युं जे का एंच हम एक पुल दिखेण लग्युं पेथर फर हम तें कुछ हर्युं ईमारत दिखेण लगीभेर पण हम तें एक नदी कर दिखेण लगी उंडे फंदे हम तें बड़ु तपड़ दिखेणु ।

और कुछ यूटिलिटी दिखेण लगीं जो खड़ी छान होईं पिछाड़ी बिटि हम तें बड़ा बड़ा डालन दिखेण लग्यां जु दिखेण से खड़की का डालन लगणा उंडे बिटि हम तें डूंगों की भीड़ दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम तें एक इमारत दिखेण लगीं नीलू च वखम हम तें एक दुकान दिखेण लगीं जे पर शटर छ लग्युं जे पर भूर्येणु च अर एंच एक ।

ये चित्र मा हम ते एक दुकानि दिखेण लगीं जैका एंच एक बड़ु बोर्ड लग्युं जै पर धीरज मोटर वर्कशॉप लिख्युं।